यहाँ एक बहुत अत्ता नज़र आ रहा है | ये एक ब्रिज दिखाई दे रहा है | ईधर अगन बगन अथाह पानी दिखाई दे रहा है ये ब्रिज काफी पुराना लग रहा है |

पर खेतान नजर आ रहा है जहां पे बैठा हुआ है। यहाँ पे ओ खेले के खूब मस्ती करे हेय। यहाँ पे पैकिम दिखाई दे रही है।

यहां पर दूल्हा दुल्हन आएगी और शादी हो गई है क्योकि जमीन पर कुछ फूल माला धरी हुई है।

ये एक साइकिल वाली मशीन है को साइकिलिंग कराएगा। वैसे तो इन मशीनों में बोहोत पैसा लगता है पर --

ये जो यहाँ पे मनोरंजन करते हैं। ये काफी बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहोत बढ़िया है। बहोत अच्छा है। वैरी गुड ।

ये एक फ्रिज मेरे को दिखाई दे रहा है | बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर यहाँ पर रोक थाम पट्टी और उच्च कुंते दरवाज़े भी दिखाई दे रहे है काफी बहुत अच्छी चीज है।